इ तस्वीर मे वो घर जो नया-नया बना है उ देखा जा सकता है जिसको अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है उसके सामने बहुत सारा बालू और मिट्टी देखा जा सकता है और ईंट भी।

एक खर को देख सकते हैं। जहाँ इसके सामने बहुत सारा पेड़ लगा है। बिजली का खम्भा कुम्भा है।

इ तस्वीर में आप बहुत सारा व्यायाम करने का टूल देख सकते है साइडिलिंग करने का वेट उठाने का वेटलिफ्टिंग करने का कई सारा टूल रखा गया है।